एक मछली दिखाई दे रही है।

मिठाई वगैरा रखी गई है और ऊपर बोटल्स दिख रही है।

बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं और वहां पर कुछ पोस्टर भी लगे हैं।

नीला लाल काले रंग का मोटरसाइकल रखा दिख रहा है एल_सी_डी लगी दिखाई दे रही है कुछ पोस्टर भी लगे हैं।

और सफेद रंग का गेट और--

बिल्डिंग में पोस्ट ऑफिस भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे आदमी महिलाएं खड़ी है।

मुझे एक रूम दिखी दे रहा है।

मुझे दो आदमी गाड़ी साफ करते हुए दिख रहे हैं।

एक आदमी ने मुंह के ऊपर रुमाल बांध रखे हैं।

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के आगे बहोत सारे फूल लगे हैं।